एक लड़का देख रहा है तकिया रखा हुआ दिख रहा है।

लाइटें लगी दिख रही पेड़ पौधे लगे दिख रहे हैं ।

पूता हुआ दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहा है। झंझरी लगी दिख रही है पेड़ेें दिख रहे हैं खजूर के पेड़े दिख रहे हैं पीछे वाइट कलर का भी मकान दिख रहा है | गै --

उम्म सजावट दिख रही है पोंपू वगैरा दिख रहे हैं | बजाने वाले सामान दिख रहे हैं | एक जेट्स --

कलर एक की दिख रही हैं खिड़कियाँ दिख रहीं गेट लगे दिख रहे हैं।

मकान दिख रहा है वाइट कलर का नीले कलर के खंभे दिख रहे हैं गेट लगा दिख रहा है एक खंभा दिख रहा है ब्लैक --

खेत दिख रहा है खेतों में पानी भरा दिख रहा है एक बोरी दिख रही है पीले कलर की पहाड़ वैगरह दिख रहे जंगल मकान --